पानी सफ़ाइया कराने वाला भी लगा हुआ है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजबाब लग रहा है

ये घर देखने में बहुत ही शानदार लग रहे हैं | देखने का नजरिया बहुत ही खूबसूरत है जो की पता नहीं चार पांच मंजिल नहीं तीस मंजिल तक हो सकते हैं |

यहाँ पे एक घर बनाने वाला डिज़ाइनिंग कार्ड दिया गया है जो की अभी खोदने की कारीगिरी यहाँ नहीं की गई है | नाक्शा की तरह काटी गई है नाक्शा देखने में बहोत ही लाजवाब लग रहा है।

ये नजरिया देखने को मुझे बार-बार नहीं मिलता है ये नजरिया देखने में एक बार नहीं बार-बार देखने का मन करते रहता है हम लोग को ये नजरिया देखने का।

कर रहे हैं | देखने का नजरिया बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है और इधर देखने में बार बार मिलता --

चाइनीज साइकिलें है जो की यहाँ पे बहुत ही जानदार तरीके से इसका बहुत ही आसानी तरह से मिल जाते हैं | उनलोग को जरूरत हो तो आपसे संपर्क कर लें ।